उनके हाथ में बच्चा भी है।

यहां पे देखिएगा फ्रेंड्स एक मंदिर दिख रहा है।

कोने में दो बटरफ्लाई दिख रही है।

यहां पे देखिएगा एक कमरा दिखाई दे रहा है और टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पर ग्लास है।

लिखा हुआ है आयुर्वेदिक स्टोर एंड क्लीनिक ।